यहाँ पे लद्दाख की फोटो है। यहाँ पर बोहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

यहाँ पर बहोत सारे लोग आते रहते हैं।

यह जिप की फ़ोटो है। यहाँ पर बोहत सारे लोग एक्सरसाइज करने के लिए आते रहते हैं ।